उसने एक हाथ में किताब ले रखी है।

पीछे लीला पर्दा है एक टावर दिख रहा है।

कुछ लड़के पैंट में हैं कुछ शॉर्ट कच्छे में हैं।

यहां पर कुछ कैंपेड रखे हुए है कुछ बाल्टी रखी हुई है।

यहां पर एक ए_टी_म मशीन हैं।

कुछ हाथ जोड़कर बैठी हुई है।

फोटो में मोटिव आटोमोटिव लिखा हुआ है।

लैब में कुछ बच्चे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।

यहां पर एक दुकान है।

दुकान पर पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पर कुछ बच्चे ट्यूबवेल पर नहा रहे हैं।

एक ब्लैक जैकेट में खड़ा हुआ है।

ट्यूबवेल का पानी चल रहा है।

छोटे बच्चे हैं। पीली जैकेट पहन रखी है एक लड़की ने।

टीचर है एक मास्टर है।

कुछ सेट हो रही है।

रोड के साइड में एक औरत खड़ी हुई है साड़ी पहन रखी है।

पीछे एक घर है घर के बराबर में एक स्कूल है।

पीछे एक पेड़ है कुछ बेल सूख रही हैं।

एक बच्चा गेम खेल रहा है।

पीछे स्कूल के बच्चे हैं।

एक पर्दा टंग रहा है।

यहां पर कुछ मछलियां है।

झाड़ू है एक झाड़ू खड़ी हुई है एक झाड़ू नीचे गिर रही है।

पेट्रोल पंप के पिलर पर तेल की शीशी छपी हुई है।

ब्लैक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है।

सिर धोने के बहोत सारे है।

यहाँ पर एक दुकान है।

यहां पर बहुत से सूट हैं।

साइड में एक कप रखा हुआ है एक केतली रखी हुई है एक डिब्बा रखा हुआ है।

पीछे एक पुल दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक घर है।

यहाँ एक ये सामने स्कूटी खड़ी हुई है।

ये एक बालों की दुकान है।

चिड़िया है चिड़िया की चोंच लाल कलर की है।

यहां पर एक ये जोड़ है।

पीछे बड़ा बड़ा घास है।

केले का पेड़ है एक।

पीछे भी पहाड़ है नीचे भी पहाड़ है।

कुछ गिटार रखे हुए हैं पी--

पीछे दो टेबल पड़े हुए हैं।

पीछे बड़े-बड़े पेड़ हैं।

पीछे ग्रिल दिख रही है घर में।

यहां पर रॉयल एनफील्ड की दुकान है।